बहोत ही सारे पेड़ पौधे हैं आसमान साइड में एक दुकान भी है जिसमें कुछ चिप्स के पैकेट लटक रहे है --